जो भी व्यक्ति को कहीं पे जाना है और अगर वो टाइम से पहले आ गए हैं तो यहां पे बैठ के वेट कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सुविधा दिया गया है।

कांसा का बनाया गया है जो की देखने में अत्यंत सुन्दर लग रहा है हर किसी को आके यहां पे पूजा करना चाहिए।

यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आये हैं बहुत दूर-दूर से आये है यह मेला बहुत ही फेमस मेला है यहाँ पर हर किसी को आना चाहिए ।

हर किसी को आ के यहाँ पे मूवी देखना चाहिए क्योंकि मूवी देखना भी एक प्रकार का एंटरटेनमेंट ही है और देखना भी हर किसी को चाहिए।

यहाँ का स्टेशन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में यहाँ पर बहुत ही साफ-सुथरा रखा गया है तो की जो गंदगी फैलाता है मेट्रो स्टेशन में उनको तुरंत पकड़ के पनिश किया जाता है उनको पेनल्टी ठोक देती है।

यह एक बिल्डिंग है और यह बिल्डिंग में अलग-अलग दूकान रखा गया है।

पार्क में बैठना चाहिए घूमना चाहिए क्योंकि बाहर घुमने से हमारी बुद्धि भी पर प्रगति करती है हमारे माथे में जब हवा लगता है तो हमे कुछ अच्छा चीज सोचने में महसूस होता है।

और यह पानी में मछलियां भी डाली गई है जो कि बाद में निकाल के उसको फिर से बेच दिया जाएगा मार्केट में।

यहाँ पर ऐसा बताया गया है सब सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े शिक्षा का अधिकार सबो का शिक्षा अभियान जो की अच्छा काम है अच्छा कदम है।

यहाँ बहुत सारे लोग आते है हर रोज दर्शन करने के लिए भगवान बौद्ध का ऐसा माना जाता है की भगवान बौद्ध अपना आखिरी समय यही पे बिताये थे।